कुछ चीजे रखी हुई है जिस पे यामाहा लिखा--

घर पर व्हाइट कलर का रंग हुआ है।

यह एक काफी बड़ी जगह है जहां पर ढाबा वगैरा दिखाई दे रहा है।

यह एक काफी बड़ी जगह है जहां पर--

टेंट लगा हुआ है रेड कलर का--

पर किलीयर नहीं दिख रहा है कि वो क्या है?

आसपास एक बाइक खड़ी है और कुछ लोग वगैरा खड़े हैं।

ये एक काफी बड़ी बस दिखाई दे रही है जि --

ऐसा लगता है कि जैसे ये एक स्कूल बस है।

यह एक पार्क जैसा लग रहा है।

जिस पर कृष्णा ऑटोमोबाइल्स लिखा हुआ है।

जहां पर लड़ी वगैरा काफी अच्छी तरीके से मिलती है।

इंसान का हाथ दिखाई दे रहा है।

गॉड की तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ।

ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये का काफी--

यह काफी अच्छी जगह है।